पट्टी पे एक लड़का गसरते हुए आ रहा है और एक लड़की उधर साइड से घसरती हुई नीचे के साइड मे जा रही है।

इस चित्र में हमें झंडू के काफी सारे फूल नज़र आ रहे है झंडू के फूल के साथ -साथ उसके पीछे की जो डांडी होती है ओ कली ओ भी बहुत लम्बी- लम्बी नज़र आ रही है।

कुछ लड़कों ने टीशर्ट पहना है एक लड़के ने शर्ट पहना है और सर के आकॉर्डिंग एक लड़का यहा पे पेन से बुक पे कुछ लिख रहा है।

वहाँ पे एक टब है टब में आ टब पे एक आदमी पानी पी रहा हैऔर उसके जस्ट बैक साइड में आ बिलडिंग है और काफी पुरानी बिलडिंग नजर--

चावल काफी स्वादिस्ट लग रहे है और उसमें दो दो अलग अलग दो प्लेट में दो चम्मच है यहाँ कोल्ड ड्रिंक और कांच का गिलास भी नज़र आ रहा है।

हमे खुला जंगल नजर आ रहा है जंगल के उस पार उस पार जो है वो पहाड़ नजर आ रहे है पहाड़ के उस पार हमे घने-घने बादल नजर आ रहे है और आसमान में भी बादल है आसमान का कलर नीला है।

एक आदमी पहाड़ पे जा रहा है जिस ने वाईट कलर की टीशर्ट और एक जीन्स पहना हुआ है और उस मे से तीन चार आदमी जो है पहाड़ पे चड़ रहे है और एक सब से टॉप पे नजर--

इस चित्र में हमें एक शॉप नज़र आ रही है जो कि आ-अ-बच्चो के लिए बच्चों के कपड़े नज़र आ रहे है और अ-छोटी लड़कियों की लेगिंस नज़र आ रहे है।

इस चित्र में हमे एक रेस्टोरेंट पे क्रॉस कलर की रेड़ कलर रेड़ एण्ड व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन की चद्दर बिछी है टेबल पे और टेबल पे एक डिश है डिश में एक बाउल है बाउल में तीन प्रकार की आइस-क्रीम है।

यहां पे बड़े- बड़े भी पेड़ है और एक इलेक्ट्रिक का बड़ा- बड़ा पोल नजर आ रहा है और घास पूस भी है और जिसका का रंग है।

आ दीवाल के कोलक के केले की फली तंगी हुई है उसके जस्ट बगल मे एक लड़का है लड़के ने रेड कलर का शर्ट पहना हुआ हैं।